सभी के हाथ में एक किताब है।

एक साइकिल में एक बैग टांगा हुआ है।

दुकान के अंदर दो टूल रखे हुए हैं।

ये एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है।

भगवान की मूर्ति का कलर गोल्डन --

जिसमें रैक में बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

एक व्यक्ति जो कि लेटा हुआ है।

इसके एक दरवाजे पर बैनर लगा हुआ है।